यहां पर कुछ सजावट की गई है और यहां पर कुछ फूल लगाए गए हैं।

और कुछ लोग यहां से जा रहे हैं सामने एक गेट भी है।

यहां पर एक खुला मैदान है।

और यहां पर बहुत सारा पानी है।